एक आदमी है जो सफेद कपड़े पहने हुए है एक आदमी है जो की टकला है नीचे चप्पल पहने हुए है पैरो मे--